रोड है रोड पे एक व्यक्ति साइकिल चला के जा रहे है और--

वहाँ पे बहुत सारे कैंची बहुत सारे वाशर सब रखे हुए हैं एक व्यक्ति दाड़ी बना रहे हैं।

और बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं गाडियों के उधर और एक हॉस्पिटल है जिसका का नाम है प्रेम हॉस्पीटल ।